एक टेंट लगा दिखाई दे रहा है पिंक कलर का टेंट है सफेद कलर का टेंट है ऑरेंज कलर का टेंट है।

नीले कलर का टेंट है और रैक बाहर पड़ी हुई एक आदमी बैठा हुआ है वाइट कलर का घर बना हुआ है।

और क्या और मेज पड़ी हुई है कुर्सी भी पड़ी हुई है कुर्सी पे लोग मेज पे लोग बैठे हुए हैं।

यह मैगी का मजा ले रहे हैं। जिसने एक में लाइट ब्लू कलर की टि_शर्ट शर्ट पैंट टी_शर्ट शर्ट पहनी है। एक ने क्रीम कलर की शर्ट पहनी है।

और चाऊमीन रखी दिखाई दे रही है हरी कलर की डलिया में ब्लू कलर की सफेद कलर की डलिया है।

से टॉप टंगे हुए हैं और लॉन्ग टॉप भी टंगा हुआ है कोटी भी टंगी हुई है ब्लू कलर की।

ये छत पर काम हो रहा है सब सेफ्टी के लिए अ अपना हेलमेट भी लगाए हुए हैं येलो कलर का सरिया का काम हो रहा है।

और छत ढलाई का का काम होगा पीछे बहुत अं बहुत ओस जैसा लग रहा है।

ऑरेंज कलर के पंखे के ऊपर डिजाइन बनी हुई है।

नीचे गत्ता रखा हुआ है तीन आदमी बस की तरफ चल रहे हैं एक आदमी गत्ते के पास खड़ा हुआ है।

ये कहीं रोड के बाहर का सीन है स्टॉपर भी रखे हुए हैं एक कत्थई कलर की गाड़ी दिख रही है।

ए_सी भी दिख रही है और पेड़ दिख रहे हैं और एक खजूर का पेड़ भी दिख रहा है।

ये बाहर किसी परचून की दुकान लग रही है जिसमें झाड़ू रखे हुए हैं खाने पीने का सामान टंगा हुआ है।

चोकर की बोरी रखी दिखाई दे रही है टब रखे दिखाई दे रहे हैं।

शिशो के ऊपर सेंट की परफ्यूम की बोतल रखी हुई है।

और ये स्टेशन है रेलिंग सफेद कलर की लगी हुई है।

ये स्विमिंग पूल लग रहा है आगे लाल और हरे कलर के दो कूड़ेदान वाले बॉक्स रखे हुए हैं।

हेलमेट भी कुछ लगाए हुए हैं पीले कलर का किसी ने व्हाइट कलर का लगाया है बोरी में भी गिट्टियां भरी हुई है टीन के नीचे काम हो रहा है।

और एक पीले कलर कभी एस_एस_सी का बोर्ड पीले कलर का लगा हुआ है और कई में कई लोग कपड़े पहने खड़े हुए हैं।

रेलिंग कत्थई कलर की पुती हुई है और दूर कोई लोग भी कई लोग खड़े हुए हैं ओ भी दिख रहे हैं।

तीन आदमी है एक दरवाजा कुछ में कुछ बना रहा है दो स्विमिंग पूल की तरफ देख रहे हैं कुर्सी रखी हुई है गद्दा रखा हुआ है।

एक ने बनियान पहन रखी है एक ने पिंक कलर की शर्ट पहन रखी है।

हरी कलर की घास भी दिख रही है लगी हुई पीछे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं और एक अंदर जाने का कोठारी ऐसा है उसमें रास्ता भी है।

यहां पर साड़ी सेंटर है कैमरा भी लगा हुआ है कैमरे के ऊपर एल ई डी के ऊपर पंखा भी लगा हुआ है।

कई प्रकार की साड़ियाँ टंगी है जिना दिखाई दे रहे हैं लाइट दिखाई दे रही है।

तीन रॉयल एनफील्ड भी खड़ी हुई है एक है लाइट ब्लू कलर की है।

एक ब्लू कलर का कपड़ा पहने है लड़का छोटा सा एक पिंक कलर का एक लेडीज साड़ी पहन के अपने बच्चे को भी साथ बैठाए हुए हैं।

किसी किसी का फेस ब्लर है कुर्सियां पड़ी हुई है और नीचे जमीन में घास लगी हुई है।

में यहां पे बोर्ड है। बोर्ड पे बिना ट्रैक्टर उम गैरेज गैरेज है और यहां लोहे का लोहे की रेलिंग लगी हुई है।

और एक गाड़ी भी का पहिया दिखाई दे रहा है जो खड़ा हुआ है और पीछे की पीछे कच्चा सा घर दिख रहा है उस पे सरिया निकली हुई हैं।